बड़ी सी चट्टान बनी हुई है और उसके अंदर पेड़-पौधे लगे है साइड में कुछ बंदर या कुत्ता कुत्ते फिर रहे है गाय है और एक पानी बह रहा है और बहोत बड़ी ऊपर चट्टान बनी है और सामने बहोत सारा सामान र --

ये एक मंदिर की फुटेज है यहाँ पे कुछ लोग खड़े हैं कुछ लोग बैठे हैं यहाँ पे जीने बने हैं रेलिंग लगी है।

जो चैने जिसमे चैने बनी है बड़ी-बड़ी और एक अंकल उसमे काम कर रहे है जो ग्रे कलर की शर्ट पहने है।